सामने कुछ मशीनें दिख रही हैं.

गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ है।

टॉप एंड टाउन आइसक्रीम का--

कांच की और सीढ़ियां बनी हुई हैं.

यहां एक लाइब्रेरी रूम लग रहा है।

और बहुत सारी लाइन से बुक रखी हुई हैं.

है और ग्राउंड में--

बहुत सारा लाइट्स लगा हुआ--

काउंटर बना हुआ है.

ऊपर ए_सी लगा हुआ है वॉल पे--

और बहुत सारी डमी रखी हुई है.

यहां सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

अ वो बोर्ड लगा हुआ है.

और नीचे भी चट्टान है.

और वॉल पे पेंटिंग की हुई है स्वच्छ सर्वेसक्षण--

और मस्जिद में गेट लगा हुआ है.

यहां सामने बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं.

हसुआ लेके और मछलियों को काट रही है.

यहां सामने एक रूम है और रूम में बहुत सारी डमी रखी हुई है.

और हर जगह पानी ही पानी है.

और इधर बहुत सारी ट्रे में मछलियां रखी हुई हैं.

और तालाब को लोहे के रेलिंग से--

और बहुत सारे लोग हैं जो मछलियों को--

लड़के चट्टानों पे बैठे हुए हैं.